सा लिखा गया है यह एक वन्य जीव अभ्यारण का गेट दिखाई दे रहा है बहोत --

कुछ रेल की पटरी नजर आ रही है।

सामने में एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में कुछ टेबल्स लगे हुए हैं।

बादल में सफेद रंग के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं जो की देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है।